जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है सामने एक तालाब बना हुआ है।

जैसे कि आप के सामने साइकिल दिखाई दे रहे हैं।

जैसे एक बाहर कार भी खड़ी हुई है और सामने एक--

देखा जा सके तो बहुत खूबसूरत लाइटों के साथ में--

जैसे कि सामने स्टेट बेकन ए_टी_एम बैंक --

कई बोट है जो रंग बिरंगे है जो दिखाई दे रही है वो देखिये दूर दूर तक आसमान कितना अच्छा नज़र आ रहा है।

जैसे कि आप देख पा रहे हैं।

कुछ एक व्यक्ति जा रहा है दो व्यक्ति ऊपर आ रहे हैं।

और दूर दूर तक छोटे छोटे पेड़ भी नजर आ रहे हैं देखा जाए तो--

जैसे कि तुम लोग इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं।

सामने देखा जा सकता है कि सामने एक रेस्टोरेंट भी दिया गया है।